सामने की तरफ एक कार दिखाई दे रहा है जिसका एक आदमी धुलाई कर रहा है।

सामने की तरफ एक खपरा भी दिखाई दे रहा है सामने की तरफ एक अल्युमिनियम का दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में खुला जगह दिखाई दे रहा है।

सामने के तरफ एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कई सारे प्लेट रखे हुए हैं सामने की तरफ एक जार और एक ग्लास भी दिखाई दे रहा है।

इन प्लेटों के अंदर बिडयानी रखी हुई है जिनके बगल में चटनी भी दिखाई दे रही है सामने की तरफ एक हरा रंग का कुछ चीज भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे कई सारे लोग आए हुए हैं सामने की तरफ एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ एक बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है सामने की तरफ एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

बगल में एक और बड़ा डिब्बा रखा हुआ है।

यहां पे कई सारे कॉपीज भी रखे हुए हैं पीछे की तरफ एक बहोत सारे ड्रावर्स भी बने हुए हैं।

इस दुकान के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा है एलिगेंट डेकोर ।

दूर की तरफ कुछ लाल रंग से लिखा हुआ भी है।

इस दृश्य में दो गाय दिखाई दे रहे हैं सामने की तरफ एक दीवार भी दिखाई दे रही है दीवाल के नीचे भूसा रखा हुआ है।

नीचे की तरफ दो तीन चार चूल्हे भी दिखाई दे रहे हैं जिनके बगल में और भी कई सारे चूल्हे रखे हुए हैं।

ऊपर की तरफ कई सारे तरह तरह के जार और ग्लास रखे हुए हैं।

जो एक लाल रंग के कपड़े के आगे रखा हुआ है।

ऊपर की तरफ एक स्टार और कई सारे बैलून्स लगे हुए हैं जो पिंक वाइट और ब्लू कलर के हैं।

थोड़ी दूर पे बैक का वीजा दिखाई दे रहा है जिनमें एक ट्राली भी रखा हुआ है।

सामने की तरफ दो टेबल भी दिखाई दे रहे हैं जिन पे जिन पे एक टेबल पे कंप्यूटर रखा हुआ है बगल में एक प्रिंटर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे कई सारे छोटे छोटे घास उगे हुए हैं और दूर की तरफ कई सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ रोड दिखाई दे रही है।

नीचे की तरफ जमीन दिखाई दे रही है दूर की तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

पीछे की तरफ एक स्टूल दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य एक कंस्ट्रक्शन साइट का है।

ऊपर की तरफ एक मूर्ति भी दिखाई दे रहा है।

बगल में बहुत सारे चेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं।

बगल में एक चीज बना हुआ है जिसके ऊपर एक आदमी लोहे के रॉड लगा रहा है।